यह हमे बहुत सुन्दर सी जो है मूर्ति दिखाई दे रही है जो की माता रानी की मूर्ति है मूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जो है फूलो का डेकोरेशन किया गया है कुछ पत्तिया है बहुत ही सुन्दर सा ये--

मूर्ति के में बहोत बड़े-बड़े हरे-भरे पेड़ दिख रहे है।

डीजे दिखाई दे रहा है साइड में बहुत ही सुंदर-सा ये टेंट को डेकोरेट किया गया हैं।

उनके पीछे एक चबुतरे जैसा कुछ है और पार्क में हमें बहुत बड़ा सा सफ़ेद कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।